हाथी का पैर एक थोड़ा पीछे एक आगे की तरफ है और जो है एक लड़का उसके सूंड पर बैठा हुआ है और वह स्माइल दे रहा है और वह जूते भी पहने हुए है।

और उस घर के ऊपर एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पे ब्यूटी कलेक्शन भी लिखा है और एक लड़का की तस्वीर भी बनी है। यार्डले मेंस पार्लर भी लिखा है।

और एक दो कुर्सियां तर तथा एक डिब्बा रखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक दो तीन आदमी भी खड़े दिखाई दे --

दो स्कूटी और एक हीरो गाड़ी खड़ी है और दो बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहें हैं और एक बोर्ड पर यूको बैंक ल लिखा है ।